बिछे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हनुमान का फोटो लगा हुवा हैं।

होटल है यह ढाबा है ये यहां पे दिख रहा है यहां पे --

प्राकृतिक एवम स्थानीय सफाई अ से मोटा लिखा हुआ है।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

यहां पे जय किसान लिखा हुआ है यहां पे चारों तरफ है।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

घर बनाने के लिए समान पड़े हैं यहां पे आप देख सकते हो।

पहाड़ देख रहे हैं और यहां पे--

बैठका के लिए रुम किया गया है।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

खाने का चीज यहीं है और यहां पे एक प्लेट है।